यह सर्विस चेक पॉइंट है। जहाँ पर गाडियों की सर्विस की जाती है। यहाँ --

यह एक शोरूम गाड़ गाड़ी के सामान ओ आलय का है। जह जहाँ पर गाडियों का आलय --

यह एक राजकीय उद्योग संस्थान का चित्र है। जहाँ पर यह बिल्डिंग बनी है।

और उनमे दो भोपू भी लगे हुए हैं और उसके बाहर एक बैठने की चीज़ भी रखी हुई --

और यह किसी भगवान का चित्तरण है यह कृष्ण मंदिर का चित्तरण है जोकि बहुत ही बढ़िया नक्कासी कि गई --